यहाँ एक घर ढलाई हो रहा है। जिसका नीचे लोहा और काट से खड़ा करके उसको रखा है। ऊपर में ढलाई के लिए नीचे पूरा सिमेंट पत्थर गिरा हुआ है।

यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पे दो-तीन पेड़ पौधे भी है बड़ा-बड़ा पेड़ है जिस पर हरा हरा पत्ता है।

यह एक सब्जी का दुकान है जहां पर बहुत सारी सब्जी रखी हुई है कुछ भाग रखे हुए हैं या चार प्लास्टिक लेबू भी रखा हुआ है यहां पर टमाटर गाजर और बैंगन भी है|

ये एक रोड है रोनो रोड के दोनों साइड मैदान है मैदान पे छोटे-छोटे हरे हरे घाँस है सामने ऊंचा किया हुआ है।

घास लगे हुए है छोटे- छोटे पेड़ लगे हुए है इसके बगल में बहुत बड़ा - बड़ा पेड़ भी है पूरा मट्टी का बना हुआ है मट्टी का बना रास्ता है और यहाँ पे लोग पिकनिक कर रहे है।

एक रोड है रोड का एक साइड में एक गाड़ी खड़ा है जिसका रंग सफेद है ।

यह बैंक ऑफ़ बड़ौदा का बैनर है यहां एक जन लेपटॉप में काम कर रहा है उसके साइड में लाल कलर का बोर्ड लगाया गया है ।

ये एक मैंन रोड ईलाका है जहाँ पे बहुत सारा ऑटो हैं यहां पे कम - से - कम सात से आठ ऑटो हैं।

ये एक बस स्टैंड है जहां पर दो बस खड़ा हुआ है एक ऑटो खड़ा है वहां पर तीन आदमी भी है एक बस का सामने एक सीढ़ी भी लगा हुआ है।